लोगों की छाया दिखाई दे रही एक आदमी के एक सफेद कलर की टोपी पहनी हुई है।

ये रूम के चारों ओर दीवार बनी हुई है और दीवार के पीछे बहोत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं यहां पर तरह तरह की सब्जीयां और फल फ्रूट्स पड़े हैं।

लोहे का एक चार्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है धीरेरा पीछे बहुत सारे घर बने हुए हैं घरों के बीच-बीच में बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस फोटो के अंदर गोल साइज की बेंच लगी हुई है बेंचों के ऊपर एक प्लेटें लगी हुई हैं सफेद कलर की और पास में टिशू पेपर पड़े हैं।

और इस बेंच के ऊपर बहुत सारे सामान पड़ा है बीच कोने में एक गमला पड़ा है और नीचे कोई सामान पड़ा है कुर्सी --

बहोत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है और बीच में ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर चौकोर साइज की--

हाथी के ऊपर एक आदमी खड़ा है आदमी के हाथ में एक बहोत बड़ी लकड़ी है।

कुछ पैकेजिंग का सामान है ऊपर टेडी बेयर पड़े पड़े हैं कलर कलर के।

इस तस्वीर के अंदर सामने परदे लगे हुए और तीन मूर्तियां पड़ी है मूर्तियों के ऊपर फूलों की मलाएं चढ़ी हुई है।

बड़े पेड़ लगे हुए हैं दीवार के ऊपर येलो कलर किया हुआ है यहां कुछ मोटरसाइकिलें है और कुछ स्कूटी है।

यहां पर अंदर की साइड बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है और बाहर कुछ दीवार बनी हुई है।

इस तस्वीर के अंदर एक कुछ बनाया हुआ है ऊपर चद्दरें लगे हुए हैं नीचे बहुत सारे ऊंट बैठे है।